इस तरफ को जाओ उस तरफ को जाओ। --

इसके लिए जवों दूर जवो पुरातना पुरातना पेहले मे डे तु देखते है।

''स्मॉल लड़किया स्मॉल लड़के चिल्ड्रन्स ड्रेसेस देखते है।''